यह एक बहोत बड़ा रोड हैं।

इसके सामने बहोत--

वो पाइप से पौधों में पानी दे रही हैं।

और इन सब मुर्गियां एक जाली टाइप में--

पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है।